जहां पे बड़े बड़े स्तंभ खड़े हुए हैं।

तस्वीर में दिखाया गया है कि ये बाजार की तस्वीर है। यहां पे बहोत सारे आंमी बाजार कर रहे हैं पीछे --

मशीन है और सामने एक आदमी सीखा रहा है फैक्ट्री है ऊपर रॉड जल रहे हैं।

ऊपर से बहुत सारे कांच के दरवाजे लगे हुए है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यह शॉप की तस्वीर है यहां पे अह बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और--

पी_ए_आई_टी का पोस्टर लगा हुआ है ये बैंक की तस्वीर है और--

गेंदे का और बहुत सारे पूजा करने वाले सामान है मिठाई है और--

कंपनी है यहां पे अखबार की छपाई होती है और सामने अ एक छतरी और उसके अगल बगल बहोत सारे बाइके स्कूटी और अ पीछे पेड़ खड़ा--

रेड कलर का पेंट है दीवार पे पीछे चेयर है और टेबल --

यह सामने पोस्टर लगा हुआ है जिस पर यथा दृष्टि तथा सृष्टि आदि योग स्थलीय--

नीचे घास जमी हुई हैं और उस साइड बच्चे सरकने वाले झूले पर झूल रहे हैं और सामने एक बच्चा खड़ा--

और छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं प्लास्टिक --